छर है गिट्टी पढ़ल है।

एक गाड़ी है मशीन है।

बेलून है बहुत सारा झरना है बेलून चार व्यक्ति को सफेद बेलून दो गो बना हुआ है फोन सब है तीन गो पंखा है लाइट है।

कूलर है लाइट है कोई प्रोग्राम हो रहा है।

यह मंदिर है भोला बाबा शिव मंदिर है।

बहुत सामान मिलता है यहाँ पर --

बिस्कुट है सर्फ है पावडर है ।

ये श्री नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री का लिखा हुआ है।